और यहां पर सफेद रंग का बहुत सारा बल्ब भी जल रहा है और बहुत सारा कुर्सी भी लगाया गया है।

यह एक रूम का दृश्य है जिसका रंग है लाल और सफेद।

और यहां पर बाल्टी भी बाहर में रखा गया है उसका रंग है पीला और हरा और ब्लू और सफेद ।

यहां पर बहुत सारे बिल्डिंगों का चित्र है और बहुत सारा खिड़की और दरवाजा भी है।

और भेंडीलीटर भी लगा हुआ है और धुआं भी उड़ रहा है।

और बहुत सारा खिड़की भी है और एक बड़ा सा दरवाजा भी है जिसमें लगा है लाल कलर का--

ऊपर में लाल और ब्लू कलर का कुछ रखा हुआ है और यहां पर तीन आदमी भी खड़े हैं।

और यहां पर बाल्टी भी है बाल्टी का रंग है ब्लू ।

यहां पर बहुत सारा छोटे छोटा ईंटे का दिवाला है।

यह एक बहुत सारा बिल्डिंग का दृश्य है जिसका रंग है लाल और सफेद।

यह एक रूम का चित्र है रूम का रंग है सफेद और वॉल पुट्टी भी कराया गया है।

यह एक बिल्डिंग का चित्र है बिल्डिंग का रंग है सफेद और लाल।

यह एक रूम का चित्र है रूम का रंग है सफेद और नीचे में टाइल्स भी लगाया गया है।